उसके आस-पास कुछ नदियाँ कुछ तालाब भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे खेत खलियान भी दिखाई भी दे रहे हैं।